टॉवर दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है और मुझे यहाँ पर बहुत सुंदर से नजरा दिख रहा है।

अच्छे थोड़ा आसमान दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही हैं।